इस तस्वीर को देखकर यह मालूम पड़ रहा है--

और हाथ में एक फोन ली हुई है जिससे सेल्फी ले रही है।

यह तस्वीर किसी मार्केट का लिया गया है।

कि यहां एक पेट्रोल पंप है जो कि पटना का ही है।

और यहां पर लाइट से लिखा हुआ है आई लव पटना ।

यह तस्वीर देखने से यह पता चल रहा है।

जिस जम का नाम है हेल्थ क्लब लेडी जीम --

यह तस्वीर एक ग्राउंड --

जो कि किसी ऊंचे स्थान से लिया गया है।

यह तस्वीर किसी ऊंचे जगह से लिया गया है।

इस तस्वीर में बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं।

जैसे पर्वत करेला मटर--